घर के बगल में बैनर लगा हुआ है ऊपर में भी बैनर लगा हुआ है बैनर के ऊपर में एक खिड़की है।

यह एक रोड है जिनकी बगल में काफी सारे बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही है ।

नीचे में एक बोरा भी बिठाया गया है।

बिल्डिंग के बगल में काफी सारे पेड़- पौधे हैं।

यह बैंक के बगल में एक ठेले लगे हुए हैं और ठेले के बगल में काफी सारे बाइके भी है।

यह एक घर है जिसका दृश्य बहोत ही सुंदर है।

यह घर के सभी स्कूटीयों में भी बैलून सजाए गए हैं।

यह एक होटल है जिसमें काफी सारे व्यक्ति समान लेते हुए नजर आ रहे हैं।

यह होटल के आसपास में मार्किन नीचे में बिठाया गया है उनके बगल में भी एक होटल है।

सामने में दो व्यक्ति खड़े हैं और दो व्यक्ति टेबल पर बैठे हुए हैं।

यह दुकान में काफी सारी किताबें और अन्य चीजों से भरा हुआ है।

और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जैसे मानवों का फोटो छापा हुआ है।

यह एक घर है घर में काफी सारे कार खड़ी है कार का रंग व्हाइट है।

यह मंदिर में एक व्यक्ति ठेला लेकर आता हुआ नजर आ रहा है।

पीछे में एक व्यक्ति है एक अंगुली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं जिनका मुंह ढका हुआ है।

व्यक्ति के बगल में काफी सारे कुड है कुड के अन्दर में एक व्यक्ति दुकानदार सभी सामानों के साथ खड़े है।

और बाहर में काफी सारे कपड़ा भी रखे गए हैं।

यह एक फ्रिज रखा हुआ है यह फ्रिज का रंग व्हाइट है जिसका दृश्य बहुत ही सुंदर है।

यह एक दुकान है जिसका दृश्य बहुत ही सुंदर है।

यह एक दुकान है जिसका दृश्य बहुत ही सुंदर है।

और यह बिल्डिंग के नीचे में लोहे का गेट लगा हुआ है।

नदी का दृस्य बहोत ही सुन्दर है।

बहोत आदमी बैठे हुए हैं कुछ आदमी खड़े भी हैं।

सोफा पर बैठकर बात कर रहे हैं।

नीचे में काफी सारे टेबुलें कुर्सी सभी चीजे लगी है।

और य यह दुकान का दृस्य बहुत ही सुंदर है।

व काउंटर को सभी रंगों से सजाया गया है।

सजाए गए है और ऊपर में काफी सारे बैलून भी लगे हुवे हैं नीचे में एक टेबल है।